बहुत बड़े-बड़े घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक मस्जिद दिखाई दे रही है।